हेलो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये एक फोटो है एक रोड के तरफ से लिया गया है और ये फोटो की तरफ ज्यादातर गाड़ी बिल्डिंगस --

बहुत अच्छा लग रहा है ये नजारा भाई यहां पर देखिए बहुत सारे नर्सरी वगैरह सब कुछ हैं।

हेलो गाइज जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये फोटो जो है वो मतलब कहीं हमको लग रहा है कि माउंटेन से दिख रहा है ये पौंड टाइप कर लिए रिवर बोल सकते हैं पौंड इधर एक नाव भी शायद खड़ी है कुछ लोग ये पार भी कर रहे हैं जो भी यह नदी या पौंड पार कर रहे ये एक लड़का इधर पत्थर पे बैठके मजे कर रहा है भाई ये--

यह ट्रेन रुकी भी है यहां पर यानी कि कोई स्टेशन है भाई सही पता चल रहा है उसे और कुछ नहीं भाई ज्यादा नहीं इतना ही बस और कुछ नहीं भाई --

हेलो गाइज जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये सामने में बैंक है ए_टी_एम है बैंक नहीं हैं फेडरल बैंक का ए_टी_एम है और ये देखिए एक बंदा फोटो क्लिक कर रहा है पता नहीं किस चीज का शायद ए_टी_एम का ही कर रहा होगा किसी को दिखाने के लिए--

हैलो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सामने ये हिरन पोस्ट का ये फोटो है रेड कलर का शाइनी हिरन पोस्ट का ही शाइन है और एक बंदा बाहर खड़ा होके कुछ बातें कर रहा है लग रहा है कुछ कमप्लेन वमप्लेन में या जो भी हो मामले में इस ऑफिस इधर आया हुआ है बाहर बुलेट भी खडी हुई है वाॅव बुलेट भी अच्छी है।

हेलो गाइस जैसे आप सब देख सकते हैं कि ये कुर्सी कुर्सी लगे हुए हैं। बहुत सारी कुर्सी है भाई और यह सीडी वगैरा भी है पता नहीं ये कहा का है? ये लिफ्ट भी लग रहा है किधर है? ये मॉल ओल का लग रहा है या कॉफी शॉप का है। कहीं का रेस्टोरेंट वगैरह का है। देखने में तो अच्छा लग रहा है। बहुत सारी कुर्सी कुर्सियां है। भाई नीचे कारपेट है लाल रंग का बाइक देखने में अच्छा लग रहा है।